यह एक दुकान है दुकान में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जैसे आ वाशिंग मशीन ।

यहाँ पे गुलदस्ते रखे गए है यहाँ पे बहोत सारे अलग-अलग फूलो के गुलदस्ते हैं यह फूल घर में लगाने के लिए यहाँ से ले जाते हैं यहाँ नीले हरे पीले वाइट सब कलर के फूल मिल जा --

पौधे भी लगे हुए हैं और आदमी गेट से घुसते हैं जो ग्रिल का है ।